और यहां पे लोग घूमना पसंद करते है। यह औरंगाबाद का है। यहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग आए हुए है।

नमाज़ अदा करते है। यहां पे सुबह शाम रोज अज़ान दी जाती है। यहां पे एक मौलाना होते है। जो लोगो को नमाज़ के बारे में बताते है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। काफी भीड़ होने वाली है।

यहाँ पे हर तरह के इलेक्ट्रिक के सामान मिलते हैं। यह दुकान काफी बड़ी है और बोहोत ही खूबसूरत है।

यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की ऐटीएम भी है। यूको बैंक की ऐटीएम है।

और यह काफी बड़ा भी होता है। लोग इसे देखना पसंद करते हैं। यह बहुत सुंदर दिखता है रंग बिरंगा।